यहाँ पे ट्रेन जा रही है जिस जो दिख रहा है की एक पोल है रेलवेस लाइन है और हरी-हरी घास है पहाड़ वगेरा सब है।

यहाँ एक स्टील का दुकान है। जिसमें स्टील का बहुत सारे बर्तन बिक रहे है। जैसे बाल्टी वगैरह --

लग रहा है एक शादी का घर है। जिसमें बहुत सुंदर-सुंदर डिकोरेत डेकोरेट वगैरह सब किया गया है और यहां पे एक पूल है।

टावर लगा हुआ है और इसके साइड में एक कार लगी हुई है जिसमें दो से तीन आदमी सब बैठ बैठने के लिए जा रहे हैं।

यह एक जेन्ट्स पार्लर है। जिसमे कि एक जेन्ट्स फेशियल करवा रहे है और एक जेन्ट्स पीक खिच रहे है। यहां बहुत सारे क्रीम वगैरा सब रखे हुए है।

यह एक ग्रीन कलर का घर है और देख ग्रील लगा हुआ है।